यह एक मकान है। उसके साइड में एक उजला कलर का बिल्डिंग है। उसके आसपास में एक --

वहां पे एक मेन भी खड़ा हुआ है। दो शॉप भी है उसके आस पास में एक पोल भी है ।

और पेड़ में बहुत सारे पत्तियां है बहोत सारे --

नीचे वाला पोर्शन है जो उजला कलर का है ।

उसके पास में काली जी का मूर्ति भी है ।

पेड़ का पौधा हुआ पौधा भी है ।

उसके अ पीछ अ बैक साइड में घर है जो --

यहाँ पे एक भैया शॉप खोले हुए हैं जो आइडिया का है शॉप ।

आज जो डांस कर रहे हैं जो गर्ल्स और बॉयस हैं वो रेड कलर का है कुछ वाइट कलर का है ।

टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ है ।

लरकी खरी हुई है जो एसटूड़ेंत है वो एक --

कुछ सब्जी वगेैरह बेच रहे हैं उसके पास में एक थेैला जो वहाँ पे दिख --

वहाँ पे एक जो भी बोरा होता है सीमेंट का वो दिख रहा है ।

एक यहाँ पे सामने से गेट दिख रहा है ।

बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दिख रहा है ।